ये एक बहौत बड़ी चटानो की पथरों की गुफा बनी हुई है गुफा के अंदर एक बॉय है जो ब्लू कलर की टी-शर्टस पहना हुआ है यहाँ बहौत सारे पत्थर भी पड़े हुए हैं।

ये एक बस स्टैंड है यहाँ पर बहोत सारे बसेज खड़ी हैं यहाँ दो बस भी खड़ी हैं जो ग्रीन कलर की हैं बस में एक अंकल चढ़ रहे हैं जिन के हाथ में झोला और ब्लू कलर का बैग टाँगे हुए हैं बस के बहार कुछ पब्लिक भी नज़र आ रही है।

ये एक सैलून है सैलून मे बहोत सारी चेयर्स रखी हुई चेयर्स पे कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर बहोत सारे ब्यूटी प्रोडक्टस --

ये एक-क-क-क ये एक ग्राउन्ड है यहाँ पर दो तीन घर बने हुए हैं और सामने बहोत बड़ा पहाड़ भी है और यहाँ पर बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं एक अंकल कुछ काम कर रहे हैं।

ये एक हवेली है और यहाँ पर रेड और गोल्डन कलर रेड और गोल्डन कलर एक सामने भी है उसका भी रेड और गोल्डन कलर है और यहाँ पर बहोत --